मुझे इस फोटो में स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा--

एक क्लास दिखाई दे रही है।

ये इस फोटो में किताबें दिखाई दे रही हैं।

हंटर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

प्रेस की दुकान दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक झंडा दिखाई दे रहा है।